यहाँ पे मस्त डिजाईन किया गया है।

सैलून है सैलून में बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने के लिए फेशिअल करवाने जाते है और बाल को हर डिजाईन में कटवाते है और दाड़ी को भी कोई छोटा करवाता है कोई पूरा निकलवाता है हर डिजाईन में-- .

ये एक घर है घर के चारों ओर--

पिंक कलर का गिफ्ट पैक पकड़ा हुआ है यहाँ पे वेटर लोग महिलाएँ और बच्चे ही है जेंट्स लोग बहुत कम दिखाई दे रहे है सब इधर-उधर आ जा रहे है।

दूध से बननी वाली मिठाइयाँ भी मिलती है दूध भी मिलते है।